यहाँ पे एक रूम है | उस रूम में एक टेबल लगा हुआ है | लग रहा है ये ऑफिस है |

ऑफिस में एक टेबल लगा हुआ है | छे सात आठ चेयर भी है पास में | एक रेक बना हुआ है ब्लू कलर का |

यहाँ पे हम देख रहे है एक रूम है इस रूम में तीन बच्चे है जो जिम कर रहे है एक्सरसाइजेज कर रहे है तीनो बच्चे।

यहाँ पे हम देख रहे हैं एक घर है घर के आस-पास में एक कोचीन है जिनहोने हम को थोडा-सा दिखाई दे रहा है एक पौधा भी है।

यहाँ पे देख रहा है एक छत है | उस छत पे तीन लड़की है | तीनो लड़की ने जिम कर रही है एक्सरसाइज कर रही है तीनो-तीनो मिलकर ।

यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मंदिर है जो मंदिर में पूजा हो रहा है | बहुत सारा आदमी बेटे हुए बहुत सारा आदमी खड़ा है |

यहां पे हम देख रहे हैं एक पहाड़ी एरिया है जहां पर बहुत सारा पत्थर भी है नदी उदी भी है पानी बह रहा है।

यहाँ पे हम देख रहे हैं एक होटल - उटल है वो होटल लग लग रहा है बहुत लम्बे है उतना हमको दिखा ई नहीं दे रहा है क्या-क्या है गा --

यहाँ पे हम देख रहे है एक रूम है ऑफिस जैसा है ये बना हुआ है बहुत सारी कुर --

टी.वी. लगा हुआ है बहुत अच्छे भी लग रहे है देखने में कितना अच्छा है ये रूम ऑफिस है।

यहाँ पे कोई चीज़ का शूटिंग है | बहुत सारा

यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई मार्केट है।

बस में एक लड़का जा रहे हैं | एक जेंट्स खड़ा हुआ है | आस पास में बहुत सारा पौधा है यहाँ पे |

पौधा भी है यहाँ पे बहुत सारे अ दे खेलने वाले चीज भी है यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में यहाँ पे

लग रहे हैं बहुत अच्छी जगह पर भी गए हुए हैं ये लड़का नहीं बहुत अच्छा जगह पर भी है।